एक नारियाल का पेड़ भी दिख रहा है।

एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

यहां पे एक व्यक्ति और एक छोटा बच्चा दिख रहा है।

इस गार्डन में हरे हरे घास भी दिख रहे है जोकि काफी छोटे से दिख रहे है।

मरा हुआ पेड़ भी दिख रहा है जिसमें पत्ते नहीं दिख रहे हैं।

दीवाल में पीले कलर का पेंट चढ़ाया गया है।

यहां पे बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

ये एक बॉक्स लग रहा है जिसके अं बाहर कांच लगी हुई है।

यहां एक पंखा भी दिख रहा है और एक पौधा भी दिख रहा है।

यहां पे ए लोहे के छड़ भी दिख रहे हैं।

ये एक डॉक्टर का केबिन है जहां पे बहोत सारे फाइलें रखी हुई है।

बहुत सारे कार्टून में भी डब्बे रखे हुए दिख रहे हैं।

तो बड़ी गाड़ियां भी और दो मोटरसाइकिल भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे छड़ भी दिख रहे हैं।

एक बड़ा सा बल्ब भी दिख रहा है।

दो व्यक्ति बैठे हुए भी है और एक लेडिस दिख रही है।

सामने में एक करकट से घेरा हुआ घर बना हुआ है जहां पे दो चौकी लगी हुई दिख रही है।

इसके सामने में दो चेयर रखे हुए हैं।

एक बाइक भी खड़ा है।

दो बिल्डिंगे भी दिख रही हैं बड़ी बड़ी।

ये एक फील्डिंग दिख रहा है जहां पे खाने का स्टाल लगा हुआ है।

बहोत सारे गुलदस्ते भी रखे हुए हैं।

एक बड़ा सा पाइप भी दिख रहा है।